घासे से दिखाई दे रहे हैं यह यह तालाब में घाट भी बनी गई है। यहां पे बहुत से आदमी नहा --

बहुत बड़े-बड़े यहां पर बहुत ही बड़े-बड़े पुतले भी हैं। यहां यह नदी के --

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं। यहां पर चमेली फुल है। और अड़हुल फुल है। गेंदे फुल है।

पगड़ी पहना हुआ है यह पर बंजारन जैसा अपने-अपने कपड़े पेहने हुए है ।